ऊपर स्पीड का मीटर लगा हुआ है।

सामने वाले आदमी ने गले में एक गमछा लपेट रखा है और सिर पर हेलमेट पहना है और वह काले रंग का कपड़ा पहना है।

टेबल पर कपड़ा बिछा जो लाल और सफेद रंग का है।

यह फोटो एक गंगा घाट के किनारे का है जहां बहोत सारे मंदिर है।

बहोत सारी खिड़कियां हैं जिनमें काले रंग के सीसे लगे हुए हैं।

लाइट का पोल लगा हुआ बड़ा सा लंबा सा जिसमें दो लाइटें लगी है।

सामने एक बड़ा सा पोस्टर है जो नीला सफेद और पीला रंग का है।

बगल में यहां सब जगह से रेलिंग लगाया हुआ है और ऊपर से पक्का किया हुआ है।

इस फोटो में एक छोटा सा रूम है जिसके दीवाल का रंग गुलाबी है।

सामने बहोत सारे रूम है उसमें चैन गेट लगा हुआ है नीले रंग का और वो रूम इट से बना है।

और ऊपर से एक एल_टी गया हुआ है काला रंग का।

सामने दो ए_सी है और दोनों ए_सी खुले हैं।

सामने वाले ए_सी का अंदर का सारा चीज खुला हुआ है और बगल वाला तो टूटा हुआ है।

खिड़कियों के जगह पर अंदर से तो शीशा और एल्यूमीनियम लगा है।

बहुत सारे रैक है ऊपर वाला रैक सीसा का है और नीचे लोहा का रैक है।

और उस पर एक कैलकुलेटर रखा हुआ है और एक न्यूज़ पेपर रखा हुआ है।

सामने एक बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जिसके ऊपर गुंबद लगे हुए हैं जो की गोल्डन रंग है और बहुत सारे सफेद लाइट जल रहे हैं।

काफी सारे लकड़ी के चम्मच है और एक बड़ा स्टील का भी चम्मच--